ए ये एक बाइक है जो रॉयल एनफील्ड है और किसी पार्क में अअअ किसी घाटी के में खड़ी है।

किसी पार्क में खेल रहे हैं और बच्चों के पीछे साइड बड़े बड़े पौधे दिख रहे हैं।

यह स्वीट मीठा है जो हिंदी में जलेबियां बोलते हैं| जो कड़ाई के ऊपर ट्रे में रखी हुई है। जो पीली-पीली दिखाई दे रही है।

यह नजारा दिख रहा है जिसमे से दो पुरुष है जो मछलियों को काट रहे है और सामने उनके पलड़ा रखा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ है जो खरीदने की व्यवस्था में है और उनके बहोत सारे शरीर का चमड़ा निकला हुआ पड़ा है ।

ये एक कालेज का द्रश है जो बेंचे रखी हुई हैं। पीछे दो खिड़कियाँ हैं। ऊपर फैन हैं।

थी किसी कंपनी का दृश्य है जो ऊपर लाल टोपी और एक आदमी खड़ा है और कोई पाइप कस रहा है।